जैसे की हमारे दिए हुए बहुत सारे पेड़-पौधे हरी-भरी दिखाई दे रहे हैं कुछ खंभे भी लगे हुए है दूर-दूर तक बिजली के जो की बहुत तार निकले हुए है और यहाँ पर स्टेडियम भी डला हुआ है जिसमे बहुत ही हरी-भरी घाँस और ईंटा भी डली हुई है कुछ झंडे गड़े हुए है।

हमें यहाँ दिखाई दे रहा लगे हैं काले कलर के सफेद कलर के दिखाई दे रहे हैं टेबल रखी हुई है जो की बहुत ही अच्छी लकड़ी की बनी हुई है नीचे गुल-गमले भी रखे हुए हैं लाल कलर के भी --

यहां पर बहुत सारी जाली भी लगी हुई है जो की बहुत ही सुंदर लग रही है उसके भीतर बहुत सारी घास लगी हुई है जो की काफी हरी भरी दिखाई दे रही है।

जैसे की बहुत ही सुंदर हुये यहाँ पर बहुत सारे झंडे भी गड़े हुये हैं जो कि लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं बहोत बड़ा मंदिर बना हुआ हैं जो की बहुत ही अच्छा लग रहा--

यहां पर हमे एक मंदिर बना दिखाई दे रहा है जो भी पी नी नीले कलर पीले कलर पुता है सफेद कलर भी है देखने मे काफी सुंदर लग रहा है और नीचे कुछ मंदिर बना हुआ है इसमे गेट भी लगे हुए है।